पेड़ दिखाई दे रहे हैं मुझे इस--

दिख रही है मुझे इस--

एक टेबल दिखाई दे रही है।

इस फोटो में जिम का समान दिखाई दे रहा है।

दो आदमी दिखाई दे रहे--